यहां एक आदमी का थोड़ा सा हाथ भी दिखाई दे रहा है।

यह एक पार्क का चित्र नजर आ रहा है जहां बहोत सारे हरे भरे घास हैं।

एक सामने घर बना हुआ है जो की हरे रंग का है उसके ऊपर एक ब्लू रंग की टंकी भी लगी हुई है।

पीछे एक दरवाजा भी नजर आ रहा है जिसका रंग व्हाइट है।

यह एक पार्लर का चित्र नजर आ रहा है।

एक कैची भी नजर आ रही है और व्यक्ति के हाथ में एक मोबाइल भी नजर आ रहा है।

बाहर लोग काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं।

यहा एक हरे रंग का डस्टबिन भी रखा हुआ है।

यह एक होटल की तस्वीर नजर आ रही है।

यह एक मेले का चित्र नजर आ रहा है यहां बहुत सारे झूले लगे हुए हैं।

बहोत सारी गुड़िया और बहोत सारे अलग-अलग प्रकार के खिलौने रखे हुए हैं।

नीचे बैट भी नजर आ रहा है।

पीछे एक आदमी भी नजर आ रहा है जो की बैठा हुआ है।

इस चित्र में हमें एक बिल्डिंग डिखाई दे रही है।

जिसका ऊपर का छत लोहे का शेड का बना हुआ है।

यहां बहोत सारे पौधे भी रखे नजर आ रहे हैं।

इस बिल्डिंग में बहुत सारी खिड़कियां लगी हुई नजर आ रही है।

यहां दो खिड़कियां भी हैं।

इस रूम में एक खिड़की नजर आ रही है।

अमने एक हरे रंग का डस्टबिन भी रखा हुआ नजर आ रहा है।

यहां सामने एक टोकरी रखी हुई नजर आ रही है।